एप एक पार्क दिख रहा है उस पार्क मे बहोत से जालीदार खिलौने दिख रहे है।

ये यहाँ ठेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ ठेले पर सब्जी लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है कुछ आदमी आते हुए दिखाई दे रहे है कुछ--

एक दुकान दिखाई दे रही है उस दुकान पर एक लड़का काम करते हुए दिखाई दे रहा है उस दुकान का नाम न्यू ब्रांड वायटर व्हाइट --